अथवा सामने दो आदमी भी खड़े हैं।

यहां पर कई सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

तथा यहां पर एक लोहे की मदद से बना बहुत बड़ा गेट है।

दुकान को ईंटे के बाउंड्री से छेका गया है।

तथा उपर कई सारे पंखे भी दिखाई दे रहे हैं।

तथा यहां कई सारी गाड़ियां भी लगी हुई है।

था ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ जिस पर सुला लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इन भगवानों की मूर्ति भी रखी हुई है।

तथा इस कमरे का रंग सफेद दिखाई दे रहा है।

एवम् यहां पर छोटे छोटे घास भी है।

एवम ऊपर सीलिंग का रंग सफेद दिखाई दे रहा है।

एवं उसके पीछे एक बड़ी इमारत भी नजर आ रही है।

यहां पर कई सारे खाने पीने के समान रखे हुए हैं।

प्रकार के सामान भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

आसपास कई सारे छोटे छोटे समान भी है।

दो कॉफ़ी के मशीन भी लगे हुए हैं।

कॉफी की मशीन के ऊपर कई सारे कप भी लगे हुए है।

सामने एक सोफा भी रखा हुआ है तथा आस पास कई सारे लाइटें भी जल रही हैं।

यहां पर कई सारे बच्चे अपना कुछ साइंस प्रोजेक्ट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

तथा यहां पर कई सारे टेंट भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

अथवा यहां कई सारे कुर्सियां लगे हुए जिसके ऊपर सफेद रंग का कपड़ा ढका हुआ है।

इस के ऊपर सफेद कपड़ा रखा हुआ है।

यह किसी रेस्टोरेंट का दृश्य दिखाई दे रहा है।

था आस पास कई सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

यह किसी नदी या तालाब का दृश्य है।

था इस बिल्डिंग का रंग क्रीम तथा सफेद दिखाई दे रहा है।

था इसके आसपास कई सारे चमकीले लाइट भी जल रही है जिसका रंग सफेद है।